और ये सभी अजेंट्स आपस में बात कर- बात-विचार करते हुए--

मुझे सामने एक जगह दिखाई दे रही है यहां पे शायद क जो कचड़ा रहता है उसे रिसाइकल किया जाता है।

यहां पे दो हिरण दिखाई दे रहे हैं और ये जो जंगल है वो काफी हरा भरा नजर आ रहा है।

मुझे सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं इन्होंने वाइट-वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और सामने यग होने वाला है जिसमे--